यह एक पार्क है जहाँ बेठने के लिए बहोत ही बढिया कुर्सियां लगाई गयी हैं। पार्क के चारों ओर बड़े-बड़े विर्छ हैं जो बहोत ही हरे-भरे हैं। यह विर्छ हमारे लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इस वृक्ष --

यह एक किला है जो कि बहुत ही बढ़ियां किला है। यह किला देखने में काफी अच्छा है। यह किला बहुत ही ऊँचा है।

यह एक मार्किट है। यह काफ़ी भीड़ भाड़ वाली इलाके का मार्किट हैं। यह मार्किट में बोहोत सारे सुपर मॉल थीएटर एवम छोटी बड़ी दुकाने हैं।

एयरटेल पेमेंट बैंक है।

विद्यालय है। इस विद्यालय का नाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय है। यह विद्यालय --